और बहोत सारे फैन लगाया हुआ है वाइट कलर के लाइट है।

और बीच में एक झूमर है और बहोत सारे डेकोरेशन है।

पानी जो है ब्राऊन कलर का निकल रहा है मतलब फॉरेस्ट से निकल कर मिट्टी के--

और एकदम नीचे एक ए_सी है दो तीन बहुत सारे एशिया दिखाई दे रहे हैं।

और जो अंदर है वो एक चेयर लगाया दिखाई दे रहा है रबर पेंसिल --

और बहोत सारे कुछ दिखाई दे रहा है स्टैपलर्स वगैरा स्प्रे बॉटल दिखाई दे रहा है और बु --

जो एक बंबू है। उसको लाइटिंग किया हुआ है और सामने ठेला --

एक तालाब दिखाई दे रहा है और --

जहां पे अ पैन कार्ड नंबर का कुछ बता रहे हैं।

और वाटी भी रखा हुआ है छोटा सा बाउल और पीछे स्टूल दिखाई दे रहा बहुत सारे चेयर और एक आंटी काम कर रही है ऐसा दिखाई दे रहा --

जमीन पे है दो और एक तालाब दिखाई दे रहा है और साइड में रेत दिखाए--

और उपर नीचे चढ़ने के लिए ऐसे स्टैंड लगाया गया है टर्टल के लिए और आजू बाजू में--

हर तरफ थोड़ा जो मिट्टी है वो सूखा हुआ है।

और छोटे छोटे प्लांट निकल के आ रहे हैं उसके अंदर से और एकदम अ लास्ट में वहां पे पेड़ बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहा है।

यहां पे लिखा हुआ है जी जमशेदजी सोडा वाटर पार्क विला करके।

और यहां पे एक झूला लगाया हुआ है एक घर के सामने --

यहां पे एक हाल के अन्दर एक--

और मंडप जो है व्हाइट ब्ल्यू पिंक और ऑरेंज का बनाया हुआ है।

और एक काउंटर है एक पी_सी है एक स्कैनर है और--

सैनिटाइजर एक चेयर है और बहोत सारे लाइट --

एक पत्तर का बड़ा सा और जिसके अंदर नेचुरल स्टेप्स बनाया गया है।

और कैंडल जो है वो मटके के अंदर लगाया हुआ है सब जगह और--

और सामने डेकोरेशन स्टे अ एक स्टेज बनाया है।

येलो और ग्रीन कलर बनाया बीच में और रेड कलर का स्टेज है सा आजू-बाजू में पॉट लगा है और अंब्रेला --

और इसके बहुत सारे लेग्स दिखाई दे रहा है।